जिसका नाम रोहन चाय स्टोर है।

डेस्कबोर्ड पर एक रजिस्टर रखा हुआ है।

जिसने येलो कलर टी शर्ट पहनी हुई है वो भी मोबाईल चला रहा है।